यहा चित्र एक अस्पताल के गेट का है।

नदी के ऊपर पुल बना हुआ है।

किनारे पर बहोत सारी नाव खड़ी हुई है।

मैरिज हॉल के बीच में हमें स्टेज पर नजर आ रहा है।

तथा कुछ प्लास्टिक के पाइप्स नजर आ रहे हैं।

यहां पर वेडिंग फोटोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस जैसी सुविधाएं उपलब्ध है।

यहां अंदर रूम में टेबल तथा चेयर नजर आ रही है।

बहोत सारी पुस्तके यहां पर मौजूद है जैसे कि सूर्या कौटिल्य डीएलएड आदि।

इस चित्र में हमें एक उद्योग का दृश्य नजर आ रहा है।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

इस होल में हमें बोहोत सारे पाइप्स कुलर --

इस चित्र में हमें बहोत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हमें स्टेट बैंक ए_टी_एम नजर आ रहा है।

कतार में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस दुकान मे एक कारीगर लकड़ी का काम कर रहा हे ।

यहां पर हमें कुछ पलंग के सोकेस नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक मैदान नजर आ रहा है।

यहां पर हमें थ्री डी वाल ब्रिक्स वॉल पैनल वुडन फ्लोरिंग पी_वी_सी फ्लोरिंग आर्टिफिशियल ग्रास जैसी सुविधाएं--